एक र अह इ ये फोटो है जिसमें--

केले के पत्ते दिखाई दे रहे हैं काफी भी दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में--

और पीले कलर के बैलून दिखाई दे रहे हैं न्यू ओपनिंग लग रही है।

और कुछ लाल लाल से ये फुल टैटू बना रखा है साइड में सलाड सी रखी हुई है।

रैपिंग पन्नी से इसे रैप किया गया है और बॉक्स वूक्स में ऊपर नीचे का ऐरो लिखा हुआ की ये --

पेप्सी का एक फ्रिज सा पेप्सी लिख के दिखाई दे रही है फ्रिज पर और ये ढाबा का फोटो है।

और काफी सारी अं अं रखी हुई है टैटू बनाने के लिए चेयर्स रखी हुई है।

अ कई सारे सूट टंगे हुए हैं और एस एंड एस लिखा हुआ है इसमें।

साइड में बाउंड्री कर रखी है ईंट की जिसमें तारों की वायर दिखाई दे रही है खंभे दिखाई दे रहे खंभे और मोटी तार पतली तार दोनों दिखाई दे रही है।

अंदर भी डेकोरेट कर रखा है बहोत अच्छा ये किसी वाटिका की फोटो लग रही है मेरे को --